यहां की दीवार भी ब्राउन कलर की--

ये एक एक्स_रे हाउस है इमैजिन --

सफेद कलर की दीवार है।

और इसके पीछे एक पेड़ भी है।

ये घर स्किन कलर का बना हुआ हैं।

वाइट कलर का फर्नीचर बना हुआ है यहाँ--

यहां पे सब के कपड़े मिलते हैं।